बहोत बड़े बड़े पेड़ हैं।

ये बाइक सेंटर है यहां पे बहुत सारी बाइक लगी हुई है।

लाइन में अअअ बाइक लगी हुई है।

यहां पर लोग नहा रहे हैं और ब जल भर रहे है।

कुछ लोग आ आगे देख रहे हैं और कुछ लोग पीछे मुड़ के नहा के जल भर के कोई एम टेंपल जा रहे हैं।

यहां पर नाई है और एक कस्टमर है जो फोन पे बात कर रहा है।

और उसकी कॉल आ गई है उसका इंतजार कर रहा है सामने शीशे लगे हुए हैं।

ये वहां उपर छ अ छतड़ी लगी हुई है तीन छतड़ी है।

यहां उस अपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है बट वह दिख नहीं रहा है सही से।

यह एक कार गैरेज हैं।

और पीछे ब्लू कलर की परदे और लाल कलर के पर्दे हैं।

यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक का है।

एक लाइट है एक पंखे हैं।

और इमारत की डिजाइन नुकीली ऊपर में नुकीली जैसे टेंपल जैसे बने हुए हैं।

इस तस्वीर से पता चलता है कि यह एक कार शोरूम है।

शोरूम के लोग खड़े हुए हैं आईडी कार्ड पे हैं वो कार्ड दिखा रहे हैं।

एक बूढ़ा आदमी है जो कार की ओर देख रहा है।

अअअ डेस्कटॉप पर वह एक आदमी बैठा हुआ है।

यह एक खेल का मैदान है यहां पे बहोत सारे लोग खेल खेल रहे हैं।

अ दीवारों पर अअ चार्ट लगा हुआ है।

जाने के लिए रास्ते और एग्जिट के लिए बोर्ड लगे हुए हैं।

दो लोग बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं एक लोग खड़े हैं एक पंखे हैं दो पंखे हैं।

एक लाइट जल रही है।

तस्वीर में भारतीय डाक है।

जो इंग्लिश में कनाडा में और हिंदी में लिखे हुए है।

एक कार लगी हुई है।

एक चाय की दुकान है लेकिन वो बंद है।

यहां पे कुछ लोग अलग बैठे हुए हैं कुछ समूह में मिलके बैठे हुए हैं।

तस्वीर में पार्क दिख रहा है।

यहां पर पेड़ पौधे लगे हुए है।

एक लोग मिल मशीन के अंदर अ समान डाल रहे हैं और दूसरे उसको चालू किया हुआ है।

क्रीम कलर का और ब्लू कलर का क्रीम कलर का शर्ट और ब्लू कलर का पेंट रेड लाल कलर के जूते पहने है।

भीड़ ज्यादा जोर की है आस्था का पर्व है।

एक घड़ी टंगी हुई है।

ओ लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है एक ऑटो भी है।

पेड़ पौधों से भरा पड़ा है अह एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है।